गेट लाल कलर का पुता हुआ है गेट काफी बड़ा है।

और लाल पौधे भी लगे हुए --

आइसक्रीम पार्लर काफी बड़ा है।

टेबल के ऊपर कुछ ग्लास और कुछ जग भी रखे हुए हैं।

बहोत सारे बच्चे झूला झूल रहे हैं।

मॉल नजर --

एक कोचिंग नज़र आ--

स्कूल --

लाल कालीन बिछा हुआ है।

रेस्टोरेंट --

खूबसूरत लग रहा है और --

एक मैदान नज़र--

मस्जिद काफी बड़ी है।

लाल कालीन बिछा हुआ है।

सीन--